और यहाँ रोड पर फल व सब्जियों की दुकान लगी हुई है पल लोग यहाँ सब्जी और फल खरीद रहे है।

अपने हेयरस्टाइल कराने कटिंग कराने और यहाँ बच्चो जेंट्स व लेडीजो का भी सलून है।

व यहाँ बहुत सारे लोग आये हुए है जो मशीनों का उपयोग कर रहे है वहा एक लड़का सेल्फी ले रहा --

और यहाँ पेड़ दिख रहे है और यहाँ मस्जिद दिख रही है जोकि बहुत ही ऊंचाई में बनी हुई है।

थेरिपि की भी फैसिलिटी भी अवेलेबल है और यहाँ बैनर लगा हुआ है हॉस्पिटल के साम --

जैसा की आप इस फोटो में देख पा रहे है बादल दिख रहे है पेड़ दिख रहे है।